कुछ कप छोटे हैं कुछ कप बड़े हैं कुछ कप सफेद हैं कुछ कप ब्लैक है अलग अलग कलर है अलग अलग डिजाइन है।

इस फोटो के अंदर सामने बोरावड़ लिखा हुआ है नीचे एक लाल कलर की गाड़ी है।

बीच में मोटोसाइकल खड़ी है बैठने के लिए लोहे के कुछ बनाए हुए है पीछे खंभा --

साइकिल मोटर साइकिल खड़ी है तरह-तरह की गाड़ियां है कोई सफेद है कोई छोटी हैं कुछ बड़ी है।

यहां नीचे सामने एक कुर्सी पड़ी है चौक के ऊपर टाइले बिछाई हुई है दरिया बिछाई हुई है।

ऊपर पंख लगे हुए है सामने लाइट लगी हुई है इस मूर्ति--

बाहर की साइड दीवार के ऊपर एक पंखा लगा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक ढबा है गाड़ी है नीचे चक्के है ऊपर कुछ नींबू पड़े हैं आम पड़े हैं सेव पड़े हैं खरबूजे पड़े हैं।

पत्तियां फैली हुई है आगे एक पी बी_एम हॉस्पिटल बना हुआ है चिरंजीवी लिखा हुआ है ऊपर।

इस होटल के आगे बहोत सारी मोटरसाइकिले खड़ी हैं।

इधर साइड में गहलोत पान मर्चेंट की दुकान है वहां पर कुछ गुटके के पाउच लटक रहे हैं बाहर कुछ आदमी खड़े हैं कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी है।